और पुल के ऊपर की तरफ कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है तथा कुछ वाहन भी खड़े दिख रहे है तथा पुल्ल के बायीं तरफ कुछ लोग नदी में नहाते हुए दिख रहे है।

इस फोटो भगवान बुद्ध की तीन प्रतिमा दिखाई दे रही हैं तथा नीचे की तरफ अन्न पूजा की का सामान रखा हुआ दिख रहे है तथा प्रतिमा पीछे की तरफ --

बिस से अधिक दिखाई दे रही है जिनपर कुछ लोग काम करते हुए भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक फौआरा दिखाए गया है जिसके ऊपर की तरफ पानी बेहता हुआ दिख रहा है।

तथा ईमारत पे सफेद रंग की पट्टियां भी हैं।

एक बहुत सारे रंग लगे हुए दिख रहे हैं तथा इसमें बैगनी रंग की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है और आगे का हिस्सा इसका अधूरा है।

लाल तथा सफेद रंग के गुब्बारों ढ़का हुआ है तथा इसके आगे कुछ अन्य गुब्बारें भी लगे दिख रहे हैं।

एक कटोरी में हरे रंग का कुछ सामान रखा हुआ है दिख रहा है तथा एक चम्मच भी दिखाई दे रही है।